ये बैडमिंटन का कोर्ट हैं जहाॅं पे लोग बैडमिंटन खेलते हैं।

देखने से यह चाय का दुकान लगता है जिसका नाम द सिटी कैफ़े है।

एक कोटक महेंद्रा का कोटक महेंद्रा बैंक है उसके ठीक बगल में बंधन बैंक है और बीच में एक चप्पल का दुकान है जिसका नाम शोहैनेफ़ है।

फोटो खींचने वाले को ममता भरी निगाहों से देख रहा है है देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है।